यह एक दुकान दिख रही है यहां काफी सारी चीजें मिलती हैं।

यह एक बहुत प्यारी-सी जगह है पानी की यहाँ झरना बह रहा है यहाँ कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं।

यहाँ एक पार्क है यह पार्क बहुत प्यारा दिख रहा है| यहाँ एक बच्चा खेल रहा है| यह काफी सारी खेलने की चीजें दिख रही है।